सड़क के किनारे उपडा घर बाकि मोंगरा लिखा हुआ है जिसके --

वृताकार यह मंजिल बनाई हुई है आस-पास दुकाने है बिजली की तारे है।

दीवाल पर हरे रंग का कार्पेट बिछाया हैकाउंटर बनाया हुआ है बाहर सड़क पर एक स्कूटी खड़ी है।